यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का सामने एक शटर दिख रहा है जो ओपन है सामने बड़ा वाला एक --

यहाँ पे एक स्विमिंग पूल दिख रहा है। एक--

उसके पीछे बहोत मकान दिख रहा है थोड़ा बहोत ट्री भी दिख रहा है।

पीकॉक भी दिख रहा है ओ जो बाउंड्री है उसके ऊपर बैठा हुआ है साइड में वाइट कलर का कपड़ा भी दिख रहा है।

यहाँ पे क्लास रूम दिख रहा है विंडो दिख रहा है बहोत सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है एक मंकी केप पेहन के बैठा हुआ है एक के मुँह पे मास्क है।

यहाँ पे चॉकलेट केक दिख रहा है चॉकलेट केक साइड के ओरीओ बिस्कुट लगा हुआ है और ऊपर में ओरीओ बिस्कुट डैरीमिल्क है किटकेट है।